जो है रिपेयर किया जा रहा है जिसका बोनट खोला गया है।

ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है बनाई हुई।

और इसके बाल जो है बहुत ही अच्छे से--

और धूप बहोत अच्छी लगी है यहां पर परछाईं दिख रही है इन ग्रिल्स की--

पांच बसे रुकी है और गाड़ियां चल रही है रोड साइड में--

और कुछ आई थिंक ये जूस निकालने की दुकान है।

यहां पर जूस बनाया जाता है फलों का जूस मशीने भी लगी हुई फल बनाने के फल के जूस बनाने के लिए।

यहां पर एक टावर है और एक है।

यह एक कैफ़े है यहां पर बहुत ही अच्छा जिसकी बहुत ही अच्छी सी--

मैनेजमेंट किया गया है और यहां पर बाहर लगे हैं कुछ बैठने के लिए कुर्सियां और एकह अम्ब्रेला स--

बैठने के लिए अच्छा प्रबंध किया गया है अंदर लाइटनिंग जो है बहुत ही अच्छी की गई है इसकी और इसके जो गेट पे है।

जहां पर एक गाड़ी अभी ठीक होने आई है एक मैकेनिक जो है लगा हुआ है इसको--

यहां पर कोई फंक्शन या सेमिनार है ज जो कंडक्ट होने जा रहा है ।

बाकी छोटे-छोटे गमलों में रखे गए हैं लगाए गए हैं कुछ पौधे फूल है कुछ पौधे हैं पता नहीं क्या है ये--

और क्या है ये ये क्या चीज है मौंटैन डुउउ --

और और यहां पर खूब मोटीचूर के लड्डू भी हैं।

कुछ जूते ब्लैक है एक जूता पिंक है एक वाइट है और ब्लैक है एक स्काई ब्लू है एक ब्लैक और वाइट और पिंक है बहुत ही अच्छे जूते है इनको --

यहां पर कुछ गाड़ियां दिख रही है मुझे और एक हॉस्पिटल है।

एक एंबुलेंस पार्क की गई है यहां पे और कुछ बहुत सारे लोग यहां इधर-उधर चल रहे हैं।

यहां पर मुझे तो एक कंप्यूटर दिख रहा है और कुछ ट्रॉफी या बहोत सारी ट्रॉफीज है यहां पे।

और एक बंदा मुझे दिख रहा है एक लड़का दिख रहा है जिसने हाथ पर जो है कुछ--

नेच नेचर बॉकिंग ट्रेल इंग्लैंड फ्लोरेस्ट यह एक आई थिंक कोई फॉरेस्ट है या पार्क है।

और जो इसका मेन गेट है वो अभी खुला हुआ है।

और इसमें जो खिड़कियां और दरवाजे हैं।

दो एयरटेल के एंटीनास लगे हैं जो टी_वी के लिए लगे हैं नॉट फॉर फोन के लिए।

और बिल्डिंग के चारों तरफ भरे-भरे पेड़-पौधे हैं।

ऑटो के बाहर दो लोग खड़े एक लोग एक बंदा खड़ा हुआ एएक बैठा हुआ है।

अरे बड़े हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं बड़े बड़े--

जो है बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए पैसा निकालने के लिए।

पीछे इसके प्रोडक्ट भी दिख रहे हैं पता नहीं क्या-क्या शैंपूज है और स्कैनर दिख रहा है एक--

यहां मुझे बहुत ही लंबी गाड़ियों की लाइन दिख रही है एक--